इस तस्वीर मे मुझे भैया कुछ टेबल उबल लगे हुए--

इस तस्वीर मे मुझे भैया कुछ अ--

लोग है एक महिला भी दिखाई दे रही है ये लोग कुछ को ध्यान से इधर देख रहे है सभी के नज़र एक ही साइड है लग रहा है इन लोग कुछ--

अन्दर जाने से सुरंग के कुछ--

और यह कुछ क्रीम है शैंपू उम्पू साबुन-उबून--

उधर बन रहा है और बरसात का मौसम के फोटो लिया गया है हरा-हरा दिख रहा है।

गेट बना हुआ है राजा महराजा की तरह और यहाँ दो तीन साइकिल है कुछ इधर कार्यालय उरियालय जैसे लग रहा है।

मछवारा है और मछली मारने के लिए एक नाव या डोंगा के सहारा लेकर दो लोग चल रहे है और यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही सुन्दर दिख रहें है और इन लोग--

और फिर हाल अभी यहाँ पे--